और बहुत से टूटे-फूटे ईट पत्थर भी दिखाई दे रहे है पूरा हरा-भरा दिख रहा है और वो लड़का ब्लू रंग की टी-शर्ट पहना है।

इसके सर में बाल नही है इसने ब्लू रंग की शर्ट पहनी है इसके पीछे एक आदमी खड़ा है बहुत से प्रोडक्ट पीछे दिखाई दे रहा है।

यह एक बैंक है जिसका नाम एच.डी.एफ.सी. बैंक है। बैंक के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत से औरतें भी हैं।

कुछ आने अलग-अलग बना रहे है। बड़ी-बड़ी खिड़किया दिख रही है टेबल दिख रहे है फंस दिख रहे है। सभी ने जूते पेहेने है।

यहाँ पर चार स्कूल की बच्चिया खड़ी है जिन्होंने अपने हाथ के कला से बहुत सुंदर चित्र बनाया है।

टीचर खड़े हो कर सभी पर ध्यान दे रही है पंखा लटक रहा है सभी बेंच के ऊपर अपने कॉपियाँ रखी हुई है और चेयर में बैठे हुए हैं।